यह एक तस्वीर है।

शोरूम का है। शोरूम टाटा कंपनी का है।

इसके अन्दर एक स्कार्पिओ महिंद्रा खड़ी हुई नज़र आ रही है। थार भी है।

और तीन बुक सेंटर और दुकान के बाहर बहोत सारी भीड़ --

ऑफिस दफ्तर का है और यह दफ्तर --

जिसका नाम है और इस पोस्टर --

नदी में कुछ विसर्जन करने के लिए उतरे हैं।

यह दृश्य किसी ऑफिस का है जहाँ पर अलग-अलग --

कुछ व्यक्ति खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और बीच में से एक सीढ़ियों का रस्ता बना हुआ है।

खड़े हुए हैं और वे सभी पेड़ सूखे हैं और मौसम --

बना हुआ है और रेलवे स्टेशन का नाम एक बोरड़ पर लिखा हुआ है।

हो बीचो-बीचो पर लगाया हुआ है और --